यह एक मशीन दिख रही है यह गोदाम जैसे लग रहा है यह गोदाम में बहोत बड़ी बड़ी मशीने लगी दिखाई दे रही है।

यहां पे लाइटिंग बहोत रंग बिरंगी दिखाई दे रही है।